जहा से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है।

जिसमें लोग काम करते हैं।

अअअ एक आदमी खड़ा है --

यहाँ पे ऑटो बस सब लगा हुआ है। अपना सामान लाद कर जा रहा है।

और सामान और कॉस्मेटिक सामान --